इस तस्वीर मे एक चार पहिया वाहन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और दो आदमी दिखाई दे रहे है।

और हरी और हरे रंग की कार्पेट बिछी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए है और हात मे उनके पुस्तक दिखाई दे रही है और ये ईसाई लोग दिख रहे है और ये उपर कुछ मालाए लटकी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है अंदर की तरफ से और एक नाई एक लड़की के बाल--

तस्वीर मे कुछ आदमी और औरते दिखाई दे रहे है और एक डब्बे मे अलग-अलग प्रकार की मछलिया रखी हुई दिखाई दे रही--

तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है कुछ झोपड़ी या वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ़ सुकी जमीन दिखाई दे रही है एक।